आइड साइड दवालें दिख रही हैं। एक टू व्हीलर खड़ी हुई है। साइड में एक ओमनी खड़ी हुई है। जे एक मेकेनिक की शॉप दिख रही है। ग्रीन कलर का कपड़ा दिख रहा है।

ब्लू कलर की लोहे की सड्डीयां दिख रही है। वाईट कलर की मस्जिद है।

ये एक डांस प्रो शो की फोटो दिख रही है। एक आदमी दिख रहा है। साइड में काउंटर दिख रहा है। छोटी सी तस्वीर लगी हुई है। साउंड स्पीकर दिख रहा है। दरवाजे दिख रहे हैं। ब्लैक कलर के रेड कलर के दीवाल दिख र --

साइड में व्हाइट कलर की दीवाल दिख रही है कांच में लाइट की रोशनी दिख रही है व्हाइट कलर की ब्लू कलर का नीचे कपड़ा--

नीचे साइड फ्लैश लगा हुआ साइड में भी कुछ मूर्तियां दिख रही है गंजिया दिख रही है पुराने जमाने की।